सामने एक चित्र बना है जिस--

यहां पे कोई भी नहीं है यहां पे झूले लगे हैं.

एक बोर्ड लगा है टवाई स्टेश स्टेशनरी के नाम से--

चित्र में एक मोर दिख रहा है.

और एक खिड़की भी दिख रही है.

डांस क्लासेस है यहाँ पे चार लडकिया डांस कर रही है और सामने एक खिड़की भी है.

यहां सामने एक चित्र बना है.

ये ग्राउंड में एक सामने वाइट कलर की बिल्डिंग बनी है बहुत बड़ी आस पास बहुत से पेड़-पौधे हैं।

चित्र बनाने चित्र में एक पेन दिख रही है वाइट कलर की सामने से--

यहां पे शादी है किसी की यहां बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

यहाँ सामने एक चित्र बना है चित्र में एक--

हॉस्टल बना है यहां बोर्ड लगा है गर्ल्स हॉस्टल का--

सामने गार्ड अंकल बैठे हैं येलो शर्ट में--

एक शॉप बनी है यहां पे बहुत सी चीजें मिलती है डेरी मिल्स अगरबत्ती ओ क्रीम पाउडर मैगी बहुत सी चीजें मिलती हैं.

पीछे बोर्ड लगा है ब्लैक कलर का द सिटी कैफ के नाम से यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका फेस झूपा हुआ है।

भोपाल का यहां इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है.

यहां सामने एक चित्र बना है जहां पे एक--